इसके बारे में बच्चो को सिखाया जाता है तत्कालय की कोई भी अगर आप पर आक्रमण करे तो इससे हम कैसे बच सके।

य मॉल है जिसमे बोहुत सारे समान रखा हुआ है। लोक --